यहाॅं पर एक हॉल की तस्वीर दिख रही है।

यहा पर एक तस्वीर दिखाय दे रही है तस्वीर के अन्दर एक पेड़ दिखाय दे रहा है।

यह एक तस्वीर दिखाई दे रही है। तस्वीर के अंदर एक ऑफिस टाइम का रूम दिखाई दे रहा है रूम के अंदर --

जो की डॉक्टर वार्ड जैसा रूम है।

ये एक तस्बीर है तस्बीर के अंदर दिख रहे है और बगल मे एक विद्युत् का पोल दिखाई दे रहा है।